दिखाई दे रहा है ऑटो-रिक्शा ।

में लम्बी सी बेंच और आस पास चेयर लगीं हुई दिखाई दे रही है।

हॉल में ये कुर्सी लगी हुई है सफ़ेद कलर और रेड कलर डली हुई कुर्सीयां लगी हुई हैं लाइन से बहौत सारी।

एक प्लेट में ये चाव्मीन दी --

पास ही में एक कटोरे में भी चाव्मीन रखा है।

पिंक कलर की रज़ाई डली हुई है।